इस दृश्य में बहुत सारे औरतें भी है।

इस कैफे में एक कंप्यूटर भी भी नजर आ रहा है।

या बुटीक बंद है अभी इसका सटर गिरा हुआ है।

यह दृश्य एक पार्क का दिखाई दे रहा है जिसमें मिट्टी पर हरे घास उगे हुए हैं।

और कई वय बच्चे खेल रहे हैं।

इस पर एक रेफ्रिजरेटर रखा गया है एक व्यक्ति है।

यहां एक फर्नीचर फैक्ट्री है।

इसके पीछे एक डाल रखा हुआ है गुलाबी रंग का।